इस तस्वीर में एक थी मैम है जो मास्क लगाकर खरे हुए है।

तस्वीर से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सब्जी और फलर फलों का दुकान हो।

इस तस्वीर में एक व्यक्ति बैग टांगे हुए --

और पत्तीहर भी बहोत नजर आ रहे है और ये सारी चीज जमीन पर पड़ी हुई है।

तस्वीर में कुछ बच्चियां नृत्य करती हुई नजर आ रही है।

फोटो और वीडियो बनाने में लगे हुए हैं बहोत सुंदर सा तस्वीर नजर आ रही है।

इस तस्वीर मे बहोत सा सुंदर दृश्य नज़र आ रहा--

रोड पर से क्रॉस करती हुई नजर आ रही है जो कुछ सवारियों को भी बैठाई हुई है अपने टेंपो पर।

माता की सोने की अद्भुत प्रतिमा स्थित है।

कुछ लोग मां को देख रहे हैं और कुछ प्रणाम कर रहे हैं।

तस्वीर में कुछ सोने के सिक्के जैसे आभूषण दिखाई दे रहे हैं।

ऐसा परतित हो रहा है जैसे पत्तों और फूलों की खरीद बिक्री हो रही हो --

तस्वीर में एक तरफ कुछ देवियों की तस्वीर लगी हुई है।

सुंदर सा वातावरण का दृश्य दिखाई दे रहा है जैसे लग रहा है सूर्य अस्त हो रहा हो।

वृक्ष की कुछ डालिया और इसमें पत्तियां दिखाई दे रही हैं।

और बिजली के कुछ खंबे भी दिखाई दे रहे हैं।

दोनो एक कमरे में जमीन पर खड़े हैं।

ऐसे एक ठो गैरेज हो या फिर कार अर साफ करने वाला जगह --

एक व्यक्ति लाल कलर के शर्ट में--

इस तस्वीर में तीन व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

एक व्यक्ति फोन से बात कर रहा है।

इस तस्वीर से पता चल रहा है कि कोई समारोह का आयोजन किया गया है।

इस तस्वीर से पता चल रहा है जैसे फलों की दुकान है।

इसमें भी कुछ महिलाएं नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं।

इस तस्वीर में कुछ बच्चे और बच्चियां प्रोजेक्ट बनाने में --

और उस समारोह में सारी लड़कियां पार्टिसिपेट की है की हो --

और कुछ खरीदारी कर रहे हैं।

इसमें पता चल रहा है एक मंदिर है जिसका गेट लगा हुआ है।

और मंदीर के अंदर एक घड़ी भी लगी हुई है।

और नदी के उस पार कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

और शुर्य भी निकलता हुआ प्रतीत हो रहा --

तस्वीर में बहुत सारे भीड़ लगे हुए हैं।

एक महिला है जो बैग लेके चल रही है।

एक महिला हाथ पे हाथ दे के चल रही --

पास जैकेट में और औरत साड़ी में है।

और एक गाय माता के साथ --

इस तस्वीर में कुछ महिलाएं और कुछ बच्चियाँ--

और एक ठो नदी भी उस तरफ नजर आ रही है।

इस तस्वीर में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है।

ऊपर नीले रंग का आसमान बगल में नदी और काशी विश्वनाथ का मंदिर का ये द्वार --

कुछ मोटरसाइकिल भी नजर आ रही है।

कुछ वृक्ष भी नजर आ रही है।

इस तस्वीर से पता चल रहा है की इस तस ये तस्वीर हॉस्पिटल की है।

यह नजर आ रही है कुछ व्यक्ति उसमें चढ़ने वाले हैं।

इस तस्वीर में दो युवक एक नाविक एक नदी में खड़े हैं।

एक व्यक्ति हैं पीले कलर के शर्ट में और जींस में कुर्सी पर बैठे हुए--

कुछ बच्चे लाइन लगाके खरे हैं और दो लड़के एक ठो मोबाइल चला रहे हैं और एक उनके साथ खरे हैं।

कुछ बेंच पर कुछ ऐसा सामान रखा हुआ है लग रहा है कुछ बिकने बिक्री का हो।

तस्वीर में एक बड़ी सी भवन दिखाई दे रही है।

कुछ मूर्तियां भी दिखाई दे रहे हैं।

दो कार लगे हुए हैं यह भी दिखाई दे रहे हैं।

एक व्यक्ति लाल कलर की बैग में है फोटो घिचने की कोशिश कर रहा --

कुछ व्यक्ति भीड़ लगाए हुए हैं।